यहां पे काफी सारे यो एक्सरसाइज करने वाले चीजें हैं।

वायरस वगैरा दिख रही है और खंबे वगैरा दिख रहे हैं।

एक स्केच रूम है जिसमें काफी सारे स्केच दिख रहे हैं सामने सरस्वती जी के स्केच दिख रही है।

जीना दिख रहा है पे डब्बे वगैरह दिख रहे हैं।

काँटा लिखा हुआ है अंदर कारें खड़ी हैं।

एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रति प्रतितोष आयोग जनपद शामली है।

जिसमें गोभी वगैरा दिख रहा है केला वगैरह दिख रहा है प्याज टमाटर वगैरा दिख रहा है।

इन पर चार पर्दे डाले हुए हैं मट्टीया दिख रही हैं।

जगह है जहां पे कार टूटा हुआ है।

बहोत सारे बच्चे दिख रहे--

एक रेस्टोरेंट है जिसमें काफी सारे बैलूंस वगैरा दिख रहे हैं व्हाइट और रेड कलर के।

सामने उस वो गेट खोल रहा है एक जेंस है वो गेट खोल रहा--

कैफे है यहां पे काफी सारे लोग खड़े हैं उनके फेस को हाइड कर रखा है जेंट्स खड़े हैं।

गेट दिख रहे हमारे देश का झंडा दिख रहा है।

ये गाँव की जरह है जिसमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सारे लोग खड़े हो रखे हैं लाइटिंग दिख रही है।

चिकन क्वाइट का है व्हाइट का है।

आयल वगैरह दिख रहा है।

जो पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी--

बेड पे लेटा हुआ है सामने एक बैग दिख रहा है।

इसमें पांच लोग दिख रहे हैं। दो लेडिस दिख रही है तीन जेंट्स दिख रहे हैं जिस --

व्हाइट कलर का रोबोट दिख रहा है इसमें।

जीसमें शिक्षार्थ आई_टी_आई आई_टी_आई का कॉलेज है।

ये एक हेयर सैलून है जिसमें एक इंसान का सेविंग बन रहा है।

इंसान के फेस को हाइड कर रखा है जैसे बिग बना रखा है।

दो लोग खड़े हैं टी_वी दिख रहा है इसका--

स्कूल का नाम अहिंसा परमो धर्म वर्तो--

धर्मशाला जाते हैं वह ग्रे कलर से पेंट कर रखा क्रीम कलर से पेंट कर रखा--

टाइल वगैरा दिख रहा है जहां पे काफी सारी चीजें लिखी हुई--